बहोत सारे चेयर कुर्सी देखने को मिल रहा है उसके बदल में हमें यहाँ पर बहोत सारे टेबल बने हुए हैं।

हमें यहाँ पे पानी देखने को मिल रहा है पानी का रंग हमें--

हमें यहाँ पर एक खुला मैदान देखने को मिल रहा है खुला मैदान में हमें ये--